इसमे से एक खिलौना मुर्गे के पास दिख रहा है और हा एक खिलौना चिड़िया का नज़र आ रहा है और हमे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का दीवार का कलर हमे पीला दिखाई दे रहा है और हमे वहाँ पर एक सफेद कलर का कुछ लिखा नज़र आ रहा है।

व्हाइट दिखाई दे रहा है और उसमें हमे बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है और उसमें हमे एक दरवाजा दिन दिख रहा है।

यहाँ पर एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही जिसका कलर हमें काला नजर आ रहा है और हुमें यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है और हुमें यहाँ पे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और हुमें यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

में यहाँ पर एक सब्जी मंडी दिखाई दे रही है जैसे इसमें हमे एक लूना खड़ी दिखाई दे रही है और हुमें यहाँ पर लाल टमाटर दिखाई दे रहे है।

और हमे उसके पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर हमे सफ़ेद और पीला दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में हमे बहोत सारी खिड़किया ज नज़र आ रही है बहोत सारे दरवाज़े दिखाई दे रहे है और हमे यहाँ पर ईंट नज़र --